अ एज्युकेसन और हिंदी मीडियम हर क्लासक पढ़ाई हूनी पेड़ शु शटर छू और भेतर जा बे आप खुण एडमिशन ले बे।

हर वैरायटी के चॉकलेट ह लेके बैठु या आर्डर दे के केक ले जाण।

फुलदान सा बड़न टेबल रख रखो सजा रखो गब्बड़ - गुब्बाडा यहां पे हई लाईट वाइट लगा रखो खूब कलरफुल लाईट छीं गुब्बाड छीं बेठाण टेबल ख़ुर्शी च्यौं एक नतनया फोण बर्थडे मनाणी अनियाँ बेठलो।